यहां पे लोगों के मामले या हत्या के मामले लूट चोरी के मामलो को सुलझाया जाता है काफी बड़ी कोर्ट दिख रही है गे दरवाजे बहुत बड़ा है।

एक अ कह सकते है एक अ मिठाई की दुकान है काफी बड़ी दुकान है और उसकी फाल्स सीलिंग जो ऊपर छत की डिजाइन होती है बोहोत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है।

परात जैसी होती है और वो उसमे डंडे के सहारे तैरता है बहुत ही बढ़ियां जगह है ये।

बहुत से लोग ये करते है की गइयाँ दूध देना बंद कर देती है तो गइयाँ को छोड़ देते है वो गलत होता है गाय को पूरी तरीके से पालना चाहिए।